यहा पे टेवल है रुमाल है ब्रेड है और एक आदमी को काफी पी रहा है और एक पकडा है हाथ मे और चस्मा भी है।

पोस्टर है दरवाजा है बहुत सारा बलून है ट्राफी है बहुत सारा यहाँ पे --

सत्ररा हैसोला है आठरा उनीस बीस--

यहा दवाई दुकान इहाँ दवाई दुकान हे इहाँ आदमी है पोस्टर है दवाई है चेयर है।

यहाँ पे बहुत पेड़ है पेड़ दिखाई दे रहे है और--

बस बोर्ड है एक स्विच् बोर्ड में स्विच गूंजा है कुछ लगा है बहुत सारे लोग हैं।